पीछे की साइड स्टॉप लिखा है और नंबर --

उनके ऊपर बहुत सारे चॉकलेट कोल्डड्रिंक ।

इसमें बहोत सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

हरी चटनी रखी है पास में दो स्टील के गिलास रखे हुए है।